और एक पीछे गाड़ी भी खड़ी हुई है और एक ऑटो --

तो इस चित्र के अंदर जैसे की हम देख सकते हैं बहोत ही सुंदर एक बहोत ही विचित्र जगह जो है हमारी टिहरी वहाँ पे लिखा हुआ है।

तो इस चित्र के अंदर जैसे की हम देख सकते हैं की हमारे सामने एक वाहन खड़ा हुआ है वाहन बोले तो कार ।

ओ अब जैसा यह हम इस चित्र में देख सकते हैं तो इसमें हमको ऊम्फी स्टूडियो करके सामने जो है हमारे नाम कुछ लिखा हुआ है।

मतलब मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड है ये।

उसपर इन भाईसाहब जी का जो है अड्वर्टाइस्मेंट हो रखा है।

ओ पीछे एक कटोरा है बड़ा या कटोरा है उसके अंदर शायद चौमिन ही हो --

और एक भाईसाहब है जो जा रहे हैं रास्ते में से तो ये एक खाली खेत है।

पॉवडर वगेरा हेयर सीरम शैम्पू और विक्स वगेरा और भी बोहोत चीजे हैं।

तो इस चित्र को देखके मेरी यार यादे काफी ज्यादा ताजा हो चुकी है क्यूंकि बचपन में हम भी अपने पिताजी से जो है साइकिल की डिमांड करते थे।

और इस चित्र के अंदर पीछे जैसे की हम देख पा रहें है की बोहोत ही ज्यादा हरा-भरा यानि की पहाड़ देख-देखने के लिए आपको मिल जाता है।

और हम देख सकते है घास है काफी सारी और वह हिरन उसको खा रहें हैं।